जो विशालकाय पेड़ है और इस पेड़ के निचे कुछ मूर्ति बनाये गए हैं।

और यहाँ मुझे एक बहुत पुराना बोर्ड भी दिख रहा हैं।

समुन्द्र के किनारे इस नदी के किनारे बहुत सारे घर -वग़ैरा दिखाई दे रहे है लगता है इसके किनारे कोई शहर बसा होगा।

और चश्मा लगा कर के जूता लगा कर के ब्लेजर लगाया हुआ है और--

यहाँ मुझे दो चिड़िया दिखाई दे रहा है ये दो चिड़िया बहुत ही खूबसूरत हैं।

यहाँ मुझे बहुत पुराने ज़माने का या फिर प्राचीन काल का --

और पेड़-पौधे भी दिखाई दे रहा है और ऊपर एक बहुत बड़ा --

जो भवन है उसके ऊपर मे ताज-महल जैसे बड़ा गुम्बदगुम्बद जैसा बना हुआ हैं।

यहाँ दूल्हा और दुल्हन दिखाई दे रहा हैं।

यहाँ मुझे एक कोई कारखाना कोई दिखाई दे रहा है और ये क्या चीज का फैक्ट्री या कारखाना हैं।

यहाँ एक बहुत बड़ा नदी है नदी में अभी पानी कम दिखाई दे रहा है बाकि ऊपर में एक --

घर सफेद कलर में पोताई किया गया है और इधर गार्डन भी बनाया गया है इसमें बढ़िया घास लगा हुआ हैं।